इसमें कई छोटे बड़े चट्टान भी नज़र आ रहे हैं। आदमी ने पहाड़ के उपर हाथ रखा है।

और सामने सुखी मिट्टी है। मिट्टी के उपर तीन गाड़ियाँ और दो आदमी नजर आ रहे हैं ।

पर्दो से सजावट की गई है। इसके उपर बल्ब लगाए गए है। .